जैसे के हम देख सकते है यहाँ पर एक रिकशा दिख रही है रिकशा के पीछे एक मशीन लगी हुई है जो नाली साफ़ करने के काम में आती है रिकशा पिली कलर की दिख रही है इसके पीछे हमको बाइक खड़ी हुई दिख रही है उसके पीछे दुकाने दिख रही है मार्केट दिख रहा है।

जैसा की हम देख सकते हैं सामने एक झांकी निकलती हुई दिख रही है झांकी के अंदर कुछ बना हुआ है जो झांकी बहोत ही अच्छी लगी जिसमें बुलडोज़र बना हुआ है जो नीले कलर का दिख रहा है।

जैसा की हम देख सकते है बड़ी सी नदी दिख रही है नदी के ऊपर एक ब्रिज दिख रहा है उसके ऊपर एक नाव दिख रही है जो के बहुत ही सुन्दर लग रही है नाव जो दिख रही है लकड़ी की दिख रही है पर नाव के अंदर कोई भी दिख नहीं रहा है उसके ठीक ऊपर आसमान दिख रहा है जो कि बहुत ही खुला और साफ़ आसमान दिख रहा है।

जैसा की हम देख सकते है कि कार स-सुधारने की दुकान दिख रही है। यहाँ पे कार है कार को सुधारते हुए एक आदमी दिख रहा है। जिसका रेड कलर की कपड़े पहन रखी है उसका एक हाथ कार के अंदर है दूसरा हाथ बाहर है।

जैसा कि हम देख सकते है गरबा खेलते हुए दिख रहे है लोग जिसमें महिलाएं दिख रही है पुरुष दिख रहे है लाइटिंग दिख रही है डांस फ्लोर दिख रहे है जो कि बहुत प्यारा लग रहा है ऊपर से इसमें टेंट लगा हुआ है झालरें लगी हुई है।

जैसा की हम देख सकते है ये चट्टानो जैसा कुछ घूमने जैसा प्लेस लग रहा है ऊपर चट्टाने-चट्टाने है नीचे से गुफा जैसे बना हुआ है जो की बहोत ही अच्छा है इसमें पिलर लगे हुए है राइट साइड से